पेड़ पौधे लगाए गए हैं साथ ही यहां पर अलग अलग रंग की --

साथ ही इस पार्किंग के पास एक बिल्डिंग का दृश्य दिखाया गया है।

साथ ही इस लाइब्रेरी में अलग प्रकार की बैठने की व्यवस्था की गई है।